बहुत बड़ा सा पार्क दिख रहा है जिसमे कई सारे झूले लगे हुए हैं रंग बिरंगे और बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है ।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है | बिल्डिंग का गेट दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग बहुत सुन्दर बनी हुई है और उसके बिल्डिंग के जस्ट आगे एक --

ये किसी चीज की दुकान सी दिखाई दे रही है | दुकान का एंट्रेंस है ये और सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं |

ये किसी सब्जी की दुकान लग रही है इसमें बहुत सारे तरबूज रखे हुए है कुछ अनानास रखे हुए हैं।

जमीन दिखाई दे रही है बहुत बड़ा सा मैदान है जहां पर कुछ खुदाई की हुई है कही-कही पे कुछ गड्ढे बनाए हुए है।